यहां पर बहुत दूर-दूर से रंग-बिरंगे मिठाईयां लेने के लिए लोग आते है यह बहुत ही गांव भर में फेमस दुकान है यहां पर बहुत ही अनेक तरह के मिठाईयां बनते है यहाँ पे मिठाइयों के साथ-साथ आइसक्रीम भी यहां पे दिए जाते है।

यह एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां पर बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं यहां पे एक गाड़ी लगाए गए हैं यहां पर कुछ लोग हैं।

कुछ मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर बाइक भी लगे हुए हैं यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग भी है ।

यहाँ पर बहुत ही सुंदर पाविस्ट स्थ पवित्र स्थल है जहाँ पर डूबते हुए सूरज को दिखाया गया है यहाँ बहुत ही पवित्र औ --